यहाँ पर मुझे एक जगह दिख रही है जहाँ पर काफी खुला एरिया है आसमान में बादल छाए हुए है।

स्टोर काफी बड़ा और सुंदर है बिल्कुल साफ सुथरा है काफी ज्यादा लाइटें लगी हुई है।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

फर्श पर काफी ज्यादा सुंदर मैट बिछी हुई है।

और कुछ और सामान भी रखा हुआ है दीवारों पर खिड़कियां दिख रही है और कुछ ओ--

सामान पीछे खड़ा किया हुआ हैं।

एक आदमी बाहर फोन छेड़ रहा है।

और दरवाजे पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई है बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा है।

जिम दिख रहा है जो काफी ज्यादा बड़ा--

एक बड़ा सा ग्राउंड है जहां पर काफी ज्यादा--